देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सेल्स प्रोवाइड व्हीकल देख सकते हैं यहां पर--

जितना भी कुकीज है उसको शीशा के अंदर रखा गया है।

टोयोटा पार्क के बहोत सारी डैमेज्ड गाड़ियां हैं यहां पर--

बिल बनाने के लिये मस्त सोफ़ा वाला कुर्सी पर बैठे हुए हैं देख सकते हैं आप लोग।

तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर एक बेंच रखा हुआ है ब्रॉउन कलर का एक व्हाइट कलर का।

तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग ये जो है कोई कंपनी का पार्किंग एरिया है।

तो भाई लोग देख सकते हैं आप लोग यहां पर जो है एक स्लाइपिंग वाला बना हुआ है।

जो है बहोत सारा चीज मिलता है खाने के लिए यहां पर बहोत भीड़ भी है ये कोई बाजार वाला एड़िया है।

हॉस्पिटल है देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर --

बहुत सारा यहां पर जो है ऊपर में ग्रीन टाइप का भी लगा हुआ है देख सकते हैं सूरज भी डालने वाला है।

लड़का और एक लड़की जो है स्टेज पे डांस कर रही है।

एलोवेरा लिखा हुआ लिखा हुआ है कफ सिरप का--

मिलकशेक भी लिखा हुआ है देख सकते है आप और बहुत सारे चीज भी है खाने पीने के रखे हुए।

देख सकते है आपलोग ऊपर में माजा ऊज़ा का भी बोटल रखा हुआ हैं।

अंटी बंटी ढाबा देख सकते है ऊपर में लिखा हुआ है वैष्णो ढाबा।

टी_एच जीरो थ्री जेड एट फोर सिक्स फाइव देख सकते हैं आप लिखा हुआ--